एक येलो है एक ऑरेंज है यहाँ पे एक आदमी का पैर दिख रहा है उसके पैर में चप्पल दिख रही है।

यहाँ एक वैडिंग हॉल दिख रहा है।

उसका ऊपर स्क्रीन कलर का दिख रहा है ऊपर लाइट दिख रही है।

पिल्लर दिख रही है पेड़ दिख रहा है सामने गेट है।

साइड में एक पेड़ दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है सफ़ेद--